पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रिज बना हुआ दिखाई दे रहा है।

बैग रखे हुए दिखाई दे रहे है और यहाँ पर कुछ शूज रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर मुझे एक बड़ी बस दिखाई दे रही है।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

जिसने ब्लैक कैप पहनी हुई है और हाथ में ब्लू मोबाइल दिखाई दे रहा हैं ।

कलरफूल्स बलून दिखाई दे रहे है खिड़की के ऊपर रेड कलर पर्दा लगा हुआ दिखाई दे रहा हैं ।

यहाँ पर मुझे एक कोचिंग क्लासेज दिखाई दे रही है जिसमें कुछ चेयर रखी हुई हैं।

यहाँ पर मुझे ब्लू रेड और वाइट कलर के बैलूनस दिखाई दे रहे है यहाँ पर दो लड़के खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं ।

यहाँ पर मुझे एक पर्दा लगा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक स्टेज दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक लड़का खड़ा है जिसने वाइट टी_शर्ट पहनी है एक चेयर पर एक लड़का बैठा दिखाई दे रहा है ।

चेयर ब्लू येलो और ग्रीन कलर की दिखाई दे रही हैं ।

यहाँ पर एक टेबल दिखाई दे रही है जिस पर एक कैची रखी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक महिला खड़ी हुई है जिसने वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई है यहाँ पर एक गमला रखा हुआ दिखाई दे रहा है ।

सिढियाँ दिखाई दे रही है रेलिंग दिखाई दे रही है उधर बाहर कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं ।

इसके हाथ में एक मोबाईल है यहाँ पर एक ब्लैक कलर की बाइक दिखाई दे रही है यहाँ पर एक स्पीकर रखा हुआ दिखाई दे रहा हैं ।